ये बाइक्स है। स्कूटीज है। बहुत अच्छा है बहुत आप इसका जैसा बहुत कलर वाला ऑफिस है। बहुत अच्छा है।

ये मॉर्निंग मे पूजा करने वाला का है जब से अच्छा दिख रहा है मस्त है।